यह एक जंगल है और जंगल में बहोत सारा पेड़ है और पेड़ बहोत अच्छा-अच्छा पेड़ है और इसमें बहोत सारी हिरणे हैं जो की अभी दौड़ रही हैं और खेल रही है देखने में बहोत अच्छा लग रहा है।

यहाँ एक डेकोरेशन हो रहा है बर्थडे का और उस डेकोरेशन में हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है।

ये एक ए स्नैक्स बार दुकान है।

इ एक प्लेट है खाने वाला प्लेट और इसमें बहुत ही अच्छा खाना रखा हुआ है इसमें मक्खन भी है और --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

यहाँ पर घर बन रहा है न्यू घर है।

पास में निकलेगा तो ये ए बहुत अच्छा लगेगा देखने में। थैंक यू सो मच ।